और मस्त झरना है।

और बो हरा-भरा लग रहा है।

जो आप लोग को दिखाई दे ही रहा होगा।

बड़ा कॉलेज है बहोत बड़ा कॉलेज है।

इंस्टिट्यूट है यहाँ आई.टी.आई. का कोर्स किया जाता है।

यह आरोग्य हॉस्पिटल बहोत --

अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी जाँच की सुविधा --

अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में और एक --

ऑन्टी लोग अंकल लोग एक बूढ़े चाचा वो --

हाई दोस्तों देखिए यह यहाँ लोग किरकेट खेल रहे हैं।

और बासिंग एक्सप्रेस लांड्री एंड ड्राई क्लीनिंग ।

हँसी हँसी फोटो खींचा रहे है जयमाला पे बैठ के।

अपने भारत का बापू उम्म कहलाते हैं।

और पेड़ काफी सारे पौधों-पेड़ हैं।